बाहर बोर्ड पे पुस्तक महल अंदर पे पुस्तेक स्टेशनरी लिखी गई है यहाँ पे अभी कोई इंसान नहीं खड़ा है।

इसकी दीवारों पे कइ हीरोज के बाल की फोटो छपे हुए है उसके अंदर एक आदमी पिंक कलर की शर्ट मे खड़ा है।

ऑटो के पीछे ए. टी. यू. एल. लिखी हुई है आसपास कई सारे पेड़ और छोटी-छोटी गिट्टी रखी हुई है।

यह एक स्टेशन के बाहर का दृश्य है स्टेशन का नाम रायपुर जैक्सन है यहाँ पे कई सारे ऑटोस खड़े हुए है जिसमें अतुल लिखा हुआ है।

यहाँ पे खाली जगह पे एक बोलेरो तीन बाइक दो स्कू ऑटो एक पिकअप रखी हुई है।